यहां पर आपको एक बस देखने के लिए मिल जाएगी जिसके अलावा आप देखेंगे भी .आई.पी. बस हे ये।

यहाँ पर आपको देखिए रोड देखने के लिए मिल जाता है जिसके बाजु में नदी भी है छोटी सी इसके अलवा यहाँ पर बहुत सारी बसे खड़ी हुई है।

यहाँ पर सामने आपको बहोत बड़ा पोस्टर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आप इधर देखने इधर आपको बहोत सारी पब्लिक देखने के लिए मिल जाती है जोकि कुछ मीटिंग चल रही है।

यहाँ पर सामने एक सैलून देखने के लिए मिल जाएगा जिसके सामने आप देखेंगे तो आपको टी.बी. नजर आती हुई दिख रही है इसके अलावा आप आजू-बाजू देखेंगे तो आपको तो कुछ कपड़े भी देखने के लिए मिल जाते हैं।

यहाँ पर आपको एक कपड़ों की दुकान देखने के मिल जाती है। जिसमे छोटे बच्चों के लिए फ़्रॉक भी रखी हुई है। नीचे आपको बहोत सारे डब्बे देखने के लिए मिल जाते हैं।